ये एक खाली जगह है और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो हरे रंग के हैं।